बार के अंदर ओपन किया जाता है इस मे ड्रिंकिंग डांसिंग सारी सिंगल अवेल होती --

बैंक की एक ऐसे सुविधा है जैसे अकाउंट ओपन किया जाता हैं और बैलन्स निकाला जाता हैं और आदि लोन्स सुविधा भी दी जाती है न--

जो इधर अपना पेट के लिए दाना चुग रहे हैं पुरानी इमारतों से बना हुआ है ये बहुत ही अच्छा है ये चारों तरफ बहुत ही अच्छी लग रही है।

जो भी हैं कान्ट्रैक्ट करके इनको सूचना दी जाती हैं --

एक महल का व्यू हैं यहाँ पे काछी मे तस्वीर मे महल बना हुआ हैं अभी छोटी छोटी छतरियाँ भी बने हुए है और अभी छोटे छोटे गलियाँ छोटे छोट --